बात करते हैं समय की तो समय अभी रात का है और बात करते लाइट्स की तो लाइट बहोत अच्छी लगी हुई है।

यहां पर मुझे दो भाई साहब दिख रहे हैं जिन्होंने एक बड़ा स्टैंडिंग वाला कैमरा लेकर अपने हाथ में रखा हुआ है।

और यहां का मौसम साफ दिख रहा है और यहां पर तेजी से धूप भी खिली हुई है।

यहां पर मुझे एक बोत बड़ा कमरा दिख रहा है जिसमे बोहोत सारे बेंचेस है न एक बोहोत बड़ा टेबल भी दिखाई दे रहा है टेबल के साथ में --

बहोत सारे घर भी बने हुए दिख रहे हैं और पहाड़ भी यहां पर बहोत ही सुंदर दिख रहे है बात करते हैं मौसम की तो मौसम है हल्के हल्के बादल छाये--

इस फोटो में मुझे बोहोत सारे घोड़े दी--

फोन में मुझे बहोत सारे लोग भी दिख रहे हैं।

मिटाई की दुकान देखने को मिल रही है जहां पर भिन्न भिन्न प्रकारों की मिठाइयां बनाकर रखी हुई है जैसे गुलाब जामुन देखने को मिल रहा है रसगुल्ला देखने को मिल रहा है यहाँ पर --

और यहां पर एक दीदी इनको सेल कर रही है।

बात करते इस फोटो की तो इस फोटो में मुझे एक रोड़ दिख रहा है रोड़ों में मुझे बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई दिख रही है।

और इस घने जंगल के बीच में एक सुंदर सा गांव देखने को मिल रहा है जो कि बहोत ही सुंदर लग रहा है और गांव भी बहोत ही बड़ा है।